यहाँ पर बस में पैसेंजर चढ़ रहे हैं।

यहां पर बस में पैसेंजर चढ़ते ओम उतरते हैं।

यहाँ पे ट्रेन आके रुकती है।

यह शर्ट कोई खरीदकर लाया है।

इस झोपड़ी में दुकान है।

इस सड़क के किनारे एक बड़ा बिल्डिंग है।

यहाँ पर एक सड़क है।

यहाँ पर बहुत से बच्चे खेलने भी आते है।

इस मैदान में बहुत से घाँस भी है।

इस सड़क के किनारे पर काफी बड़ा-बड़ा घर है।

यह ए.टी.एम. के द्वार पर सीसे की गेट है।